यहाँ बहुत सारी हरियाली पेड़ - पौधों के डिजाइन तरीके से गार्डन टा टाइप का बनाया गया है कॉलेज टाइप का बनाया गया है यहाँ पे स्टुडेन्टों को बहुत अच्छा माहौल बनाया है इसीलिए इस कारण से --

ये बहुत बड़ा अ हं.. बिल्डिंग बना हुआ दिखाई दे रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई कॉलेज भवन हो यहाँ पर बहुत झंडे लगे हुए वि- विभिन्न प्रकार के झंडे लगे है यह रेड कलर येलो कलर ऑरेंज कलर ब्लैक कलर ब्लू कलर सभी कलर के झंडे लगे हुए है बहोत अच्छा रस्ता बनाया गया है।

मार्केट यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे मार्केट बाजार टाइप का बना हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर मार्केट में गोभी वगेरा बहोत सारी महिलाएं अपनी अपनी दुकान पर बैठी हुई है कुछ तम्बू बनाई हुई बैठी है कुछ बहोत सारे पुरुष व व्यक्ति वर्ग महिलाए वर्ग यहाँ पर बाजार घूमने के लिए आती है।